एक पार्क दिख रहा है जो बहुत खूबसूरत है।

बहुत सारी खाने वाली चीजें भी रखी हुई है।

यहाँ की फर्स्ट से बहुत ही क्लीन नजर आ रही है।

यहाँ की खिड़कियाँ बहुत शीशे की है।

जो कि बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक सामान रखी हुई है।

एक एक गाड़ी पे टी_वी जा लेके जा रहे हैं।

यह बहुत अच्छी तरह से सजाई रखी गई है।

एक पैर है जो कि बहुत छोटी है।

यहाँ पे कुछ बाइकें नजर आ रही है जिसमें स्कूटी बहुत ज्यादा है।

जहाँ पे बहुत सारे लोग फोटो खींचने के लिए खड़े हैं।

अच्छे-अच्छे फोटो लगाए हुए हैं।

या तस्वीर किसी पुल की दिख रही है।

जो कि बहुत बड़ी लंबी पूल है।

नीचे चार वैन लगे हुए हैं।

यह तस्वीर किसी किराने शॉप के लिए दिख रही है।

यहां पे कुछ लोग सामान लेने के लिए खड़े हैं।

एक व्यक्ति पैकेट में हैंड डाले हुए हैं पैसे निकालने के लिए--

ये तो किस ग्राउंड की लग रही है।

यहाँ पे दो गाड़ियाँ नजर आ रही है।

उसके बगल में कुछ चेयर रखी हुई गई है।

एक व्यक्ति बैठे हुए हैं उसपे फोन चला रहा है।

यह तस्वीर किसी ग्राउंड की लग रही है।

एक छोटी सी टेंट लगाई गई है।

ये इसके बगल में घर दिख रहा है जो कि बहुत ही--

यहाँ बहुत सारी तारें नजर आ रही है।

जिसकी दीवारें रेड कलर से रंगी गई है।

यहाँ पे बहुत सारी फोटो लगाए गए हैं।

और बहुत सारी फोटो रखी हुई है।

रेस्टोरेंट किधर चला रही है।

यहाँ पे एक रूम दिख रहा है जो बहोत क्लीन है।

एक बॉक्स रखा गया है म्यूजिक बजाने के लिए--

बगल में पेड़ नजर आ रहे हैं जो बहुत घने हैं।

यहाँ एक पूल बनाई गई है जो कि बहुत ही--

इसके उस तरफ एक पहाड़ दिख रहा है।

यह बहोत ही खूबसूरत नजर आ रही है यहाँ के चेयरे बहोत ही --

नहा रहे हैं कुछ लोग पानी को लेके जा रहे हैं।

क्योंकि उसमें पानी गंगा जी का भर के रखा जाए--

कुछ दीवार पे चित्र बनाए गए हैं।

यह बहुत अच्छी तरह से डिजाइनिंग की गई है।

यह तस्वीर हाजी प्रोजेक्शन की दिख रही है।

जिसके सामने बहुत सारी रिक्शें रखी गई हैं।

यह हाजी प्रोजेक्शन बहुत बड़ा दिख रहा है।

यह तस्वीर किसी डांस क्लास की नजर आ रही है।

जहाँ पर कुछ बच्चों को योगा कराया जा रहा है एक्सरसाइज कराया जा रहा है।

यह तस्वीर किसी वी_आई_पी के घर की नजर आ रही है जहाँ पे --

सोफे रखे गए हैं उसके ऊपर टी_वी है।

कुछ लोग सामान लेने के लिए दुकानों में जा रहे हैं।

यहां सड़क पे पानी जमी हुई है।

मुस्कुरा रही है जैसे फोटो खींचवा रही है।

यहाँ पे बहोत सारी बाइके सर्विसिंग हो रही है।

कुछ बच्चे उसको देखने के लिए आए हुए हैं एक व्यक्ति उसको--

यहां पे बहुत अच्छी-अच्छी लाइट लगाई गई है।

यह तस्वीर किसी मौत की नजर आ रही है।

यहाँ डेकोरेट बहुत अच्छी तरह से किए गए हैं लाइट बहुत अच्छी तरह से लगाया गया है।

इनके पीछे दो व्यक्ति है एक व्यक्ति के एक व्यक्ति ने सर पे कपड़े बांधे हुए हैं।

बहुत सारे लोग है टहलने के लिए आए हुए हैं।

एक व्यक्ति फोटो ले रहे हैं।

रखी गई है जो बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइन किए गए हैं।

यहाँ पे कुछ व्यक्ति सामान लेने के लिए आए हुए हैं।

एक बच्चा दिख रहा है एक बुजुर्ग से बात करते हुए--

और कुछ लोग पीछे हाथ करके खड़े हैं।

चेयर लगाई गई है जो कि फैमिली रेस्टोरेंट जैसा दिख रहा है।

यहाँ डेकोरेट बहुत अच्छा सा किया गया है।

जहाँ पर लोहे से कुछ बनाया जा रहा है मशीन --

इसके बगल में कुछ एक घर दिख रहा है जिसमें बहुत सारी खिड़कियाँ हैं।

एक पास्टर है जो कि कुछ बता रहे हैं।

यहां पे लाइटें हैं जो कि--

जो कि दानापुर से होकर ये मछली बाजार गुजरती है।

जो कि बहुत सारे कपड़े रखे गए हैं।

इसके सामने कुछ कार दिख रहे हैं जो कि बहुत बड़े-बड़े हैं।

इसमें बहुत सारी बोतल भी रखे हुए हैं।

जो कि बहुत बड़े-बड़े मछली रखे हुए हैं।

यह तस्वीर किसी -साड़ी -शॉप की दिख रही है।

कुछ पुतले बनाए हुए हैं जिसको साड़ी पहनाया गया है।

यहाँ राधारानी की शॉप दिख रही है।

होटल की लग रही है जिसमें एक रूम दिए हुए हैं।

लड़कों ने कपड़े रेड क ब्लैक कलर के पहन रखे हैं।

यह तस्वीर किसी शॉप किल नजर आ रही है।

जिसमें दो बाइक ना दिखे हुए हैं।

ये तस्वीर किसी कॉफी शॉप की लग रही है।

इसमें बहुत अच्छी टेबल दिख र है।

गिलासें रखी हुई है टेबल पे कुछ फूल दिख रहे हैं।

बहुत सारे लोग खड़े दिख रहे हैं कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं।

यहां पे बहुत सारे लोग योगा कर रहे हैं।

कारपेट बिछाया गया है योगा करने के लिए--

यहां पे कुछ टिश्यू पेपर नजर आ रहा है।

एक व्यक्ति उनको कुश कुछ सिखाना चाह रहे हैं।

जहां पे कुछ लोगो को डांस सिखाए जा रहे ।

ये तस्वीर किसी पार की नजर आ रही है।

बहुत सारी फूल की पैर भी नजर आ रही है।

यहां पे कुछघर नजर आ रही है जो कि बहुत ही खूबसूरत है।

यहां की चेयर भि बहुत ही प्यारी लग रही है।